कुछ नाव हैं जो कि हाँ पानी में चल रही है और जस्ट साइड में एक पर्वत भी देखने को मिल रहा है और पर्वत के ऊपर कुछ पेड़-पौधे भी उम लगाया गया है ।

जो कि ये बहुत ही उम अच्छा तरह से दिखाई दे रही है और ये बहुत ही उम सुंदर देखने को मिल रहा नाव में ही सब कुछ उम दिया हुआ है घर बसा हुआ है उसके लिए --

एक स्कूल है जो कि उम्म साइड के इस केम्पस के बाहर एक फील्ड भी है जो कि बहोत ही अच्छी तरह से देखने को मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग भी है।

और काफी सारे लोग आये हुए है और ऊपर मे अपना-अपना परदा डाल के बैठे हुए नीचे मे आलु प्याज बैंगन भिंडी लहसुन सोएहजन सब कुछ यहां पे मिल रहा है और --

यहाँ पे यहाँ पे बोहोत सारे लोग आते हैं से।

बहुत ही सुन्दर अद्भूत देखने को मिल रहा है| कुछ लाइटिंग भी दिया गया है इसमें और ये बाल बंधे गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से देखने को है|